पानी का बहाव तेज है कई मकान ढाह चुके हैं ।

नदी है नदी में पानी है साइड से बहुत सा पेड़ है पानी का बहाव--

अ हवाई अड्डा है यहाँ पे साइड में छोटी बच्ची एक महिला खड़ी हुई है।

चारों तरफ गेट टाइप का लगा हुआ है यहाँ हरी -हरी घास है मैदान टाइप का है ।